दे रहे हैं और एक बिल्डिंग दिखाएं दे रही है। एक बैनर दिखाई दे रहा है।

डिब्बे दिखाई दे रहे हैं और खिड़की दिखाई दे रही है। फ्रेम दिख रहे हैं।

यहां एक होटल का रूम दिखाई दे रहा है जहां पर एक--

दे रहीं हैं और कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है और कुछ बिल्डिंग दिखाई --

कुछ स्वेटर्स दिखाई दे रहे हैं।

ये लोग दिखाइं दे रहे हैं और कुछ लाइट्स दिखाइं--

और एक तिरंगा दिखाई दे रहा है।

दे रहे हैं और पानी दिखाई दे रहा है कुछ कौवे दिखाई--

दे रहे हैं। एक दावत दिखाई--

आसमान दिखाई दे रहा है और पहाड़ दिख रहे हैं।